और कुछ फूल लगे हुए है कुछ गुलाबी कुछ सफ़ेद फूलो को कुछ लोग तोड़ भी रहे है और गार्डन ल में घास लगा हुआ है कुछ जगह बीच ही बीच में पेड़ लगे हुए है सामने।

सामने एक पंखा लगा हुआ है और एक बना हुआ है कुछ खम्बे लगे हुए हैं और इधर --

लगी हुई है शटर शटर का डा खुली यु ये अंदर एक और शटर लगी हुई इस छीत ने के एक साइकिल वाला आगे खड़ा है और एक जमीन पर बैठा है वह इस जमीन पर कुछ करचड़ा डला हुआ --

लगा हुआ एक काउंटर जो की है काले कलर का बहार और एक सोफा बिछा हुआ हैं जहाँ लगी हैं टेप ।

तीन लड़के फोटो खींच रहे हैं फोन नीले कलर का है सामने वाला लड़का फोटो खींच रहा है।

दो लोग बेठे हैं पहने हुए हैं सफेद शर्ट और पीछे लगी हुई हैं किताब कुछ लाइटे भी लगी हुई हैं एक किताब वो सामने रखी है।

और कुर्सियों का रंग नीला है और वो नोर औरत के उसकी कुर्सी का भी रंग पीला है ज़मीन पर कचड़ा डाला हुआ है उसपे पड़ रही है परछाई ।